यह एक गैराज का दृश्य है जहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर न्यू विश्वकर्मा गेराज लिखा हुआ है।

एक और पुतले ने ब्लू कलर का स्वेटर और येलो एंड ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

और कई सारी कुर्सी भी नजर आ रही है जिसका रंग ब्लैक और व्हाइट कलर का है।

यह एक बड़ी सी गाड़ी का दृश्य है उसका रंग व्हाइट और ब्लैक कलर का है।

कई तरह के समान है जो की प्लास्टिक के डिब्बे में है।

यह एक झरना का दृश्य है यहां पे बहोत सारे लेडिस और जेंट्स दिखाई दे रहे--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

कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं जो हरे एक रंग के हैं और आसमान का रंग आसमानी कलर है।

दीवारों का रंग येलो और व्हाइट और ब्राउन कलर का है।

यहां पे बहोत सारी बाइक भी नजर आ रही है जो कि ब्लैक कलर का है।

यहां पे कुछ पत्थर दिखाई दे रहा है जोकि व्हाइट और ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा--

यहां पे कई सारे घास और कुछ पौधे दिखाई दे रहे जो की हरे रंग के है यहां पे पानी भी दिखाई दे रहा जो कि व्हाइट कलर का है।

बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं जो कि ब्राऊन और वाइट कलर के।

सामने एक पोल दिख रहा है जो कि वाइट कलर का है।

एक कुर्सी भी दिख रही है जोकि रेड कलर की है।

यहां बहुत सारे बॉक्स नजर आ रहे हैं और कुछ बोतलें भी दिख रही हैं।

यहां पर एक घर भी दिखाई दे रहा है जिसका रंग ऑरेंज और वाइट कलर का है।

यह एक रूम का दृश्य है यहां पर कई सारे डिब्बे दिख रहे हैं और एक जार दिख रहा है।

कई सारे बॉक्स भी दिख रहे हैं बॉक्स का कलर ब्राउन रंग का है और डिब्बे का रंग हरा और वाइट कलर का है।

करकट का रंग ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है।

एक आदमी ऑरेंज कलर का शर्ट और वाइट कलर का पैंट पहना हुआ है।

दो आदमी दिख रहे हैं जोकि वाइट कलर के शर्ट और ब्लैक कलर के पेंट पहना हुआ है।

मार्बल्स का रंग ब्राउन कलर का है।